कई सारे बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं।

कुछ पोल लगे हुए हैं पोल के ऊपर व्हाइट कलर की लाइट जल रही है।

बोर्ड लगे हुए हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है।